नदी में पानी भरा है और यहाँ पर दो आदमी लोग नाहा रहे है और यहाँ पर कुछ चीजें हैं।